इन गाड़ियों के बिल्कुल सामने दो मिट्टी और कंकड़ का ढेर लगा और पीछे कुछ वृक्ष और ए कुछ घर दिखाई दे रहे है ।

दृश्य में एक गाड़ी दिखाई गई है जो कि बहुत ही सुन्दर जगह पर खड़ी है।

सामने एक टेबल रखा है जहाँ पर बहोत ही रंग-बिरंगी बोतले रखी गई है और यहाँ पर हमें दो डस्टबिन जो है वो नजर आ रहे है और रात के समय सजाया गया है।

कुछ पानी रुका हुआ है।

और जहाँ पर लिखा नजर आ रहा है शासकीय कन्या पॉलीटेक्निकल जगदलपुर और कुछ खुला आसमान पीछे नजर आ रहा है ।

कुछ टेबल नज़र आ रहे है जहाँ पर काले और नीले रंग से डेकोरेशन नज़र आ रही है यहाँ पर कुछ व्यक्ति नज़र आ रहे है जो की टेबल पर खट के आसपास नज़र आ रहे है।